यह आप देख सकते हैं यहां किसी का एक घर दिखाई दे रहा है।

जहां पे गैस सिलेंडर मिलते हैं।

यह आप देख सकते हैं दिन का समय है।

पीछे की और बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

हाल दिखाई दे रहा है हॉल मे सामने चार से पांच